दो आदमी अंदर जा रहे है।

अंदर की तरफ जा रहे हैं।

यहां पर एक केक रखा हुआ है जिसका रंग--

एक लड़का माइक में कुछ बोल रहा है।

पीछे दिवाल हैं और इसका रंग--

और नीचे चूड़ी डली हुई है।

पास में एक गेट दिख रहा है।

यहां आईसक्रीम जैसी ठंडी चीज मिलती है।

और एक चद्दर बाहर आया हुआ है।